और कुछ दीवारें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।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

और कुछ दीवार जैसा बना हुआ है जो थोड़ा छोटा है जो येलो कलर का है और ब्लैक कलर का है।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

इसमें बहोत सारे लाइटे दिखाई दे रही है जो लगी हुई है जो वाइट कलर की है।

इसमें कुछ प्रिंट दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है।

इसमें बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो रखे हुए हैं और कुछ कांचे दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और येलो कलर का है।

इसके बगल में एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और ग्रीन कलर का है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।